भारत के आसपास के जितने भी अ पड़ोसी देश है वहां पे जहां ऐसा है वहां पे ऐसी नाव में हम अक्सर देखते कि लोग आया जाया करते हैं।

अक्सर स्कूल की तरफ से ऐसे ही बच्चों का प्रोग्राम करवाया जाता है। जहाँ जो जितने भी बच्चे होते है वो मिल-जुल कर जश्न मनाते हैं।

कई गाँवो में कई जगह जहां लोग उत्पादन करते है। फसल का या कोई चावलों गेहूं का।

मुर्गे हमे कई जगह मिल जाते है। जहां जो लोग इसी का कारोबार करते है या उन्हें पालते है और उन्हें बेचते है दुकानों में --

अलग- अलग किस्म के जानवर भी हमें मिल जाते है| हमें यहाँ पे कुत्ते से लेके मैना तोते से लेके हर जगह हमें हर चीज़ मिल जाती है।

का एक स्वरूप है हमारे यहाँ इतिहास ऐसे रहा है जहाँ राजा महाराजाओं ने बड़े- बड़े महल बड़े -बड़े कोठिया बनवायी थी जो कि आज भी है।

अलग-अलग क्लासेस लेते हैं। स्कूल में भी अलग-अलग हमें ऐसी चीजों में पार्ट लेने के लिए कहते हैं।

ऐसे भी हमें कई जगह देखने को मिल जाता है जो जहाँ पे अलग -अलग लोग आते है वो अपना- अपना काम करते है। यहाँ लोग कुछ पढने के लिए आते हैं कुछ --

इधर से उधर अपना सफ़र करते है। उन्हीं में से ऐसा भी हमें कई जगह भारत में देखने को मिल जाता है।